और वो भी मस्त लग रहा है और लड़की को कुछ कर जैसे कुछ नियम होता हे वोही गोरह ओर कैमरा भईया कैमरामेन भैया फोटो ले रहे हे ओर बहुत अच्छा फूल का डोनैट भाई तगड़ा होले ओर लड़का जो--